और घर पूरा अच्छा से बनके तैयार नहीं हुए हैं अभी तक घर में --

इस फ़ोटो में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा डांस कर रहा है।

एक नदी का फोटो दिखाया गया है इस नदी में बहुत ही ज्यादा पानी है इस नदी का पानी बहुत ज्यादा सफा है।

इस तालाब में छोटी-छोटी मछलियां को डाला जाता है ताकि मछली बड़े हो फिर उसे पकड़ के बाज़ार में बेचा जाता है।